और आस-पास और उसको ग्रिल से घेरा हुआ है और उसके आस-पास भी कुछ चित्र बने हुए हैं।

यह एक बस स्टैंड उम बस का सीन है जिसमें लिखा हुआ है।

और यह यहाँ पर एक नंबर ऊपर में सोलह नंबर लिखा हुआ है।

इसका गेट ट अ अ ग्रेनाइट से बना हुआ है नीचे बहोत बड़ा गेट है।

यह है नेशनल हाइवे है जो कि एन.एच. ट्वेंटी सेवन है।